जितना भी पंखा है सब चल रहा है।

ये एक पथल रखा हुआ है जो की बहुत ही अच्छा दिखाई देता और इसमें बहुत सारे पथल रखे हुए है।

ये एक बैठने का चबूतरा बना हुआ है बीच मे--

बहुत सारे रंग बिरंगे के फ्लावर लगे हुए हैं जिसे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है।

दो लड़का है जो एक लड़का स्नान कर रहा है।

बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें एक बच्चा खड़ा है।

उसके नीचे एक बाइक वाला खड़ा है जो रेड कलर का बाइक है।

यह फल का दुकान है और इसमें बहुत सारे तरह तरह के फल लगे हुए हैं।

और इसके आस पास बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं।

यह फ्रिज दुकान है और उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फ्रिज लगे हुए हैं।

यह विर्ध्य माल है और इसमें बहुत सारे लेडीज के कपड़े मिलते हैं।

वाल का रंग भी पेंट किया हुआ है।

एक गूगल खुला हुआ है और पास में ही माउस रखा हुआ है जोकि ब्लैक कलर का है।

नीचे दीवाल भी है और एक संख्या लिखा हुआ है दो और एक संख्या है तीन।

इस्मार्ट बाजार जो लिखा हुआ है वो रेड कलर में लिखा हुआ है ।

एक टेबल खाना खाने का रखा हुआ है।